वहाँ पे रहते हैं औ घर है इनका। कांच लगी हुई है। दरवाजा खुला हुआ --

और यहाँ किनारे मे ग्रैसेस वगेरा लगी हुई है। गार्डेन बना गार्डेन बनाए गए हैं। ग्रास को लाइन से सजाये गए हैं।

यहां पर बहुत जगह लाइटिंग दिखाई दे रही --

बहुत ही बड़ा मैदान है और यहां ज्यादा भीड़ नहीं होगी तो --

और इसका कलर है टू-इन-वन कलर है दो कलर का है ये ब्लैक कलर और वाइट कलर दिखाई दे रहा है।

ऊपर से भी अ रोड गयी हुई है और निचे से भी गयी हुई है। खम्बे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे ओरियो बिस्किट उसपे लगे --

एकदम बोहोत ही अच्छा दिखाई दे रहा है।

डॉक्टर बैठा हुआ है और बातें मरीज लोग से बात कर रहे है डॉक्टर बैठा हुआ --

बस स्टैंड जैसे दिख रहा है यहाँ पे बोहोत सारे लाइन से चैरस रखी हुई हैं। बोहोत सारी पब्लिक बैठी हुई है। लाइन से बैठी हुई है।